और बगल में तीन रंग का पेंट या कुछ किया हुआ है शीशा है बगल में।

यह भी एक अमीर का रूम है जहां पे दो बेड है एक बेड खराब लग रहा है एक बेड अच्छा लग रहा है उसके बगल में टी_वी लगाया है उसके बगल मैं--

योगा कर रहे हैं एक खाली खाली है सब अपने-अपने जगह पे पता नहीं क्या लाए हैं पीला सा--